और इसमें बहुत सारे जो है अ-अ दरवाजे लगे हुए है पीछे जो एक बड़ा सा ट्री है स्काई का कलर जो है वो वाइट और ग्रे में बना हुआ है बहुत ही सुन्दर लग रहा हैदेखने में ।

रस्ता बना हुआ है सामने जो है गेट भी है गेट जो है अभी खुला हुआ है और सामने दो बाइक जो है वो भी रखा गया है ये एक बिल्डिंग का नजारा है।

यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे एक स-स-स्तंभ यानी की एक फलक को दिखाया जा रहा है जो कि सीमेंट से बना हुआ है।

ये जो पिक्चर है इस पिक्चर मे जो है एक छो रोड का पिक्चर दीखाया गया है जो की ग्रे कलर मे दिखा रहा है सामने जो है एक गेट बना हुआ है एक बड़ा सा गेट है।

अ जिस बिल्डिंग मे यहाँ पे वाइट कलर से बना हुआ है साथ मे ग्रे कलर भी लगा हुआ है इसमे और रेड कलर का कुछ बॉर्डर भी बने हुऐ है।

जो अ रेड कलर का एक जैसे की बिल्डिंग होता है पुराना हिस्टोरीकल बिल्डिंग है वही शो हो रहा है यहा पे सामने एक गार्डन भी बना हुआ है जिसमे हरियाली है छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी है देखने मे बहुत ही सुंदर लग रहा है इस--

यहा पे जो एक अ स्टोर दिखाई दे रहे है जो स्टोर है उसके अंदर बहुत सारे बुक --